और इस घर में बहुत ज्यादा फैसिलिटी और बहुत ज्यादा नारियल का पेड़ लगा हुआ है जो कि दिखने में काफी --

इसमें यहाँ पे बहुत अच्छा सा जिम कराया जाता है। कम पैसा में जिम कराया जाता है इसीलिए लोग यहाँ ज्यादा पसंद करते --

और इसका मट्ठा भी बनता है और यह खाने में भी बोहोत स्वादिष्ट और बोहोत सुंदर लागता है।

जो की यह उसको देखने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आते है उसको बहुत पैसा खर्च कर के ये फिगर दिखाया गया है |

यह एक बहुत सुन्दर बहुत अच्छा सा फिगर दिखाया गया है जो कि दिखने में काफ़ी मस्त और अच्छा है यह फिगर में --

जो कि इसको बहुत पैसा खर्च करके बनाया गया है और यहाँ पे बहुत दूर-दूर से लोग इसको देखने आते --

ये बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी मछली का फिगर दिखाया गया है। जो की यह मछली दिखने में काफी सुंदर और बहुत बड़ी बड़ी और मस्त-मस्त मछलियां हैं। यह मछली--